रूबी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम उपयोग करना सीखेंगे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स बनाना रूबी में मेथड्स परिभाषा के भिन्न तरीके
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबन्टु वर्जन 1204 रूबी 193 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको लिनक्स कमांड्स टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का ज्ञान होना ज़रूरी है
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
शुरू करने से पहले याद रखें कि हमने पहले ही तत् डिरेक्टरी बनायीं थी
अब उस डिरेक्टरी पर जाते हैं
रूबी हाइफेन ट्यूटोरियल और क्लासेस डिरेक्टरी पर रूबी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है
रूबी में वैल्यू से स्ट्रिंग या नंबर तक सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है एक क्लास सम्बंधित दाता और फंक्शंस का संग्रह है
यह व्यवस्थित जानकारी को रखने के काम आ सकता है
एक ऑब्जेक्ट क्लास को प्रमाणित करता है
एक क्लास की परिभाषा कीवर्ड क्लास के साथ शुरू होती है
इसके बाद क्लास का नाम आता है
यह इंड के साथ सीमांकित होता है
अब क्लास का एक उदाहरण देखते हैं
क्लास प्रोडक्ट रूबी कोड इंड क्लास का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए
नाम जिसमें एक से अधिक शब्द हों कैमल केस में होने चाहिए
उदाहरणस्वरूप यूजरइन्फॉर्मेशन प्रोडक्टिंफर्मेशन बाद वाली फाइल्स के नाम के शब्दों को अलग करने में अंडरस्कोर का प्रयोग होगा
यूजर अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन रूबी के प्रारंभिक ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित जैसे ही गेडिट में एक नयी फाइल बनायें
इसको class definitionrb नाम दें
मेरे पास क्लासेस के कार्यान्वयन का एक कार्यकारी उदाहरण है
ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
मैंने इस उदाहरण में क्लास नामक आर्डर को परिभाषित किया है
अब कुछ वेरिएबल्स जोड़कर क्लास को उपयोगित बनाते हैं
फिर एक इंस्टैंस वेरिएबल माइंस्टेंस परिभाषित किया है
और इसको एक वैल्यू नियुक्त की है
मैंने एक क्लास वेरिएबल मायक्लासवर भी परिभाषित किया है
और इसको एक वैल्यू नियुक्त की है
अब क्लास के उपयोग के लिए कुछ कोड जोड़ते हैं
टाइप करें पट्स आर्डर डॉट इंस्टेंस अंडरस्कोर वेरिएबल्स
इस लाइन से पहले एक नयी लाइन के लिए पट्स कुछ कैरेक्टर्स स्लैश एन जोड़ें
उसको कॉपी पेस्ट करें और जोड़ी हुई लाइन के नीचे इसे जोड़ें और इसे सेव करें
अब इस कोड को निष्पादित करें
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें रूबी स्पेस क्लास अंडरस्कोर डेफिनिशन डॉट आरबी और आउटपुट देखें
आप परिभाषित इंस्टेंस वेरिएबल देखेंगे
अब टाइप करें पट्स आर्डर डॉट क्लास अंडरस्कोर वेरिएबल्स
इस सीमांकन को लाइन के बिल्कुल नीचे कॉपी पेस्ट करें और सेव करें
अब टर्मिनल पर जाएँ और पहले की तरह ही फाइल को निष्पादित करें
आप परिभाषित क्लास वेरिएबल देखेंगे जो स्पष्ट भी होता है
अब आप अपना क्लास लिखने के लिए सक्षम हैं
आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है160
एक ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टैंस है
जिसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है
ऑब्जेक्ट क्लास में परिभाषित विशषताएं और मेथड्स रखेगा
आप ऑब्जेक्ट कैसे घोषित करते हैं हम एक नया कीवर्ड उपयोग करके क्लास का ऑब्जेक्ट घोषित करते हैं
यहाँ हम प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट घोषित कर रहे हैं
यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है
प्रोडक्ट productन्यू यह प्रक्रिया ऑब्जेक्ट का प्रारंभन कहलाती है
यह ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट का प्रकार है
अब देखते हैं प्रारम्भिक मेथड क्या है160
इनिशियलाइज मेथड ऑब्जेक्ट बनाते समय कॉल हुआ है
ऑब्जेक्ट पर न्यू कॉल करने के लिए इनिशियलाइज़ मेथड उपयोग करते हैं
इनिशियलाइज़ मेथड के पास पैरामीटर्स की सूची हो सकती है
अन्य रूबी मेथड्स की तरह यह डेफ कीवर्ड के बाद आता है
एक उदाहरण देखते हैं
प्रारंभिक स्तर के रूबी ट्यूटोरियल्स की तरह ही गेडिट में एक नयी फाइल बनायें
और इसको ऑब्जेक्ट अनडेस्कोर इनिशियलाइज डॉट आरबी नाम दें
मेरे पास ऑब्जेक्ट प्रारंभन कोड का एक कार्यकारी उदाहरण है
ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
यहाँ मैंने एक आर्डर नामक क्लास को परिभाषित किया है
फिर बिना आर्गुमेंट के मैंने एक इनिशियलाइज़ मेथड को परिभाषित किया है
मैंने एक पट्स मेथड को परिभाषित किया एक मैसेज प्रदर्शित करने के लिए आई हेव क्रिएटेड एएन ऑब्जेक्ट
आगे मैंने आर्डर डॉट न्यू को परिभाषित किया
यह इनिशियलाइज़ मेथड का उपयोग करेगा
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें
रूबी स्पेस ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर इनिशियलाइज डॉट आरबी और आउटपुट देखें
आप मैसेज देखेंगे आई हेव क्रिएटेड एएन ऑब्जेक्ट अब वापस गेडिट पर जाएँ और मेथड में एक आर्गुमेंट जोड़ें
अब पट्स में परिवर्तन करते हैं
यह पास किये हुए आर्गुमेंट की वैल्यू प्रदर्शित करना चाहिए
आगे टाइप करें आर्डर डॉट newआई हेव क्रिएटेड एएन ऑब्जेक्ट यहाँ हमने न्यू मेथड को एक आर्गुमेंट दिया है
यह आर्गुमेंट इनिशियलाइज़ मेथड को पास किया जाता है
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें रूबी स्पेस ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर इनिशियलाइज डॉट आरबी और आउटपुट देखें
आप प्रिंट किया हुआ मैसेज आई हेव क्रिएटेड एएन ऑब्जेक्ट देखेंगे
अब आप ऑब्जेक्ट प्रारम्भन का मतलब समझ चुके होंगे
याद रखें रूबी में फंक्शन्स हैं जो क्लास प्रदर्शित करते हैं
क्लास में प्रत्येक मेथड डेफ और इंड ब्लॉक में परिभाषित है
मल्टीवर्ड मेथड नेम अंडरस्कोर से अलग हुआ है
कुछ करैक्टर्स जो मेथड नेम के साथ संलग्न हुए है निम्न हैं 160
प्रत्येक करैक्टर मेथड में कुछ मतलब जोड़ता है
अब कुछ उदाहरण देखते हैं
प्रारंभिक स्तर के रूबी ट्यूटोरियल्स की तरह ही गेडिट में एक नयी फाइल बनायें
और इसको क्लास अंडरस्कोर मेथड्स डॉट आरबी नाम दें
मेरे पास क्लास मेथड्स कोड का एक कार्यकारी उदाहरण है
ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
यहाँ मैंने एनिमल नामक एक क्लास को परिभाषित किया
फिर मेरे पास दो मेथड्स हैं ब्रीथ और वाल्क यह दोनों का डेफ और इंड कीवर्ड्स के साथ परिभाषित हुए हैं
फिर मैंने ऑब्जेक्ट एनिमल को प्रारम्भ किया
मैंने इसे वेरिएबल एनिमल नियुक्त किया लोअरकेस आ के साथ
फिर मैंने क्रमानुसार मेथड्स ब्रीथ और वाल्क का उपयोग किया
अब प्रोग्राम को निष्पादित करें
टर्मिनल खोलें और टाइप करें
रूबी स्पेस क्लास अंडरस्कोर मेथड्स डॉट आरबी और आउटपुट देखें
आप लाइन्स देखेंगे160 आई ब्रीथ आई वाल्क प्रिंट हुई हैं
यह इसलिए है क्योंकि आपने दो मेथड्स ब्रीथ और वाल्क उपयोग किये हैं
पट्स स्टेटमेंट इन मेथड्स में परिभाषित है परिणाम देते है जो आप देखते हैं
आगे देखते हैं कि एक अनुगामी क्वेस्शन मार्क के साथ मेथड्स कैसे बनाते हैं
प्रारंभिक स्तर के रूबी ट्यूटोरियल की तरह ही गेडिट में एक नयी फाइल बनायें
और इसे क्लास अंडरस्कोर मेथड्स अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर ट्रेलिंग अंडरस्कोर कैरेक्टर्स डॉट rbनाम दें
मेरे पास क्वेस्शन मार्क कोड के साथ क्लास मेथड्स का एक कार्यकारी उदाहरण है
ट्यूटोरियल को पूरा समझते समय बीच में रोककर कोड टाइप करें
यहाँ उदाहरण के लिए मैंने पहले की तरह ही समान क्लास ली है
यहाँ ब्रीथ मेथड अनुगामी क्वेश्चन मार्क क्वेस्शन मार्क रखता है
ऐसे मेथड्स सामान्यतः बूलियन वैल्यूज रिटर्न करने में उपयोग होते हैं
यह रूबी के मेथड नेमिंग कन्वेंशन पर आधारित है
एनिमल डॉट ब्रीथ question मार्क घोषित करके मेथड उपयोग हुआ है
टर्मिनल खोलें और टाइप करें रूबी स्पेस क्लास अंडरस्कोर मेथड्स अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर ट्रेलिंग अंडरस्कोर कैरेक्टर्स डॉट आरबी और आउटपुट देखें
आप आउटपुट में ट्रू देखेंगे
आगे हम दूसरे मेथड वाल्क को परिभाषित करते हैं
इसके पास एक साइन लगाएं इक्वल टो एनिमल डॉट वाल्क कॉल करके इसको उपयोग करें
फिर इस मेथड को निष्पादित करें
टर्मिनल खोलें और टाइप करें रूबी क्लास अंडरस्कोर मेथड्स अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर ट्रेलिंग अंडरस्कोर कैरेक्टर्स डॉट आरबी और आउटपुट देखें
यह एक अनडिफाइंड मेथड एरर देगा
यह इसलिए है क्योंकि इक्वल टो साइन अलग मतलब रखता है
यह एक मेथड को वैल्यू नियुक्त करने में उपयोग होता है
अब इस बार मेथड को कुछ अलग तरह से उपयोग करते हैं
टाइप करें पट्स एनिमल डॉट वाल्क इक्वल टो हॉप्स अब एक अन्य कोशिश करें
टर्मिनल पर जाएँ और पहले की तरह ही कमांड रन करें और आउटपुट देखें
अब देखेंगे कि शब्द हॉप्स प्रिंट हुआ है
यह प्रदर्शित करता है कि मेथड के आगे इक्वल टू साइन का मतलब है नियत कार्य
अब आप अपने मेथड्स को लिखने में सक्षम होने चाहिए
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा क्लासेस कैसे घोषित करें क्लास के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनायें रूबी में मेथड्स परिभाषा के भिन्न तरीके एक नियत कार्य की तरह160 एक क्लास प्रोडक्ट परिभाषित करना
मायवर की वैल्यूज और मायवर के लिए सेट वैल्यूज प्राप्त करने के लिए मेथड्स परिभाषित करना
वैल्यूज सेट करने के लिए साइन उपयोग करके मेथड परिभाषित करना
क्लास के ऑब्जेक्ट्स को शीघ्र दर्शाना और उपरोक्त दो मेथड्स उपयोग करके वैल्यूज सेट और प्राप्त करना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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद